यह पिक्चर किसी ग्रॉसरी स्टोर की है।

पिक्चर किसी छोटे होटल एवं ढाबा की लग रही है।

इंसान हाथ में ब्लैक कलर की स्मार्टवॉच भी लगा रखी है इंसान का कलर काला है।

टाल का नाम रणवीर बर्गर रोल हब है।

में पानी की बोतल भी रखी है।

यह पिक्चर किसी बुद्धिस्ट टेंपल की लग रही है।

सामने एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा--

एक पुरुष चश्मा भी लगाया हुआ--

एक कार कवर की गई है दूसरी ब्लैक कलर की है दिन का मौसम है।

यह पिक्चर किसी बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी जैसी लग रही है।

यह पिक्चर किसी छोटे मोटे किराने दुकान की है।

चर में ढेर सारे गोष्टी के सामान रैक पे रखे हुए हैं।

एक इंसान माइक से कुछ अनाउंसमेंट कर रहा--

इसमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और आगे कुछ हरे भरे केंपस --

यह पिक्चर किसी बैरक की है।

सामने एक पेड़ पे सेफ्टी टायर भी लटकाया हुआ है।